और यहाँ पे स्कूल का रंग पीला उजले रंग का है और यहाँ पे बहुत सारी पीले कलर की बसे हैं ।

जहाँ पे बहुत सारे लड़के खेल रहे है और यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े --

खंबो पे बत्तियाँ लगायी गयीं हैं।

और अनेक प्रकार की बत्तियां लगाई गयी हैं और यहाँ पे फर्श को --

और कुर्सियों के पीछे और भी छोटी-छोटी कुर्सियाँ लगाए गए हैं यहाँ पे सोफे भी लगाए गए हैं उजले रंग के।

यह किसी उद्यान का चित्र है और जहां पे एक छोटे बच्चे को खड़ा किया गया है और यहाँ--

एक बहोत सारे छोटे-छोटे घांसे झंगल झाड़ियाँ --

ख़रीददारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे बहोत छोटे-छोटे ठेला वाले ऊपर ठेला भी लगाए --

एहे यहाँ पे बहुत यहाँ पे बहुत सारी वाहने भी है जैसे मोटरसाइकिल भी खड़ी की --

मीट मछली मीट मुर्गा भी बेचा जा रहा है ।